इस फोटो पर हम एक वाटर पार्क देख सकते हैं जहां पर कई तरह के स्लाइड्स लगे हुए हैं।

जो की एक बिल्डिंग के गेट में लगाया गया है।

इस फोटो पर हम एक चर्च देखते है जहां लोग आ रहे है और जा रहे है।

उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी सफेद कलर की बिल्डिंग भी है।

और देखते हैं कि यहां पर किचन के सामान रखे गए हैं जैसे बर्तन गैस टेबल और कई तरह के समान रूम के बाहर देखने से लगता है कि शाम हो गया है।

यह रात का समय है और होटल की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही है।

इस फोटो पर हम एक बड़ा सा घर देख रहे हैं।

इस फोटो पर हम एक घर का रूम देखते हैं जिसकी दीवार में कई बुद्धा भगवान की कई पिक्चर लगाए हुए हैं।

जो प्लास्टिक के अंदर में है।

इस पिक्चर में हम एक ऑफिस देख सकते हैं।

आगे जमीन में एक प्यारा सा कुत्ता भी खेल रहा है।

इस फोटो पे हम एक कैफे को देखते हैं जहां ग्रीन कलर्स के चेयर और टेबल्स रखे हुए हैं।

बिल्डिंग के नीचे एक काली गाड़ी को पार्किंग में रखा गया है।

वे नदिया भी बह रही है।

और पहाड़ों का नजारा भी दिख रहा है।

इस फोटो में हम एक भीगा हुआ रोड देख सक--

इस ब्रिज को बेम्बू और तारो के हेल्प से बनाया गया है।

इस फोटो पर कई कारें पार्किंग में खड़ी हैं।

पीछे मे बहुत सारे दुकाने हैं और दुकानों के साइड में एक गेट भी है।

इस फोटो पर हम एक बड़ा सा बिल्डिंग देखते हैं जो की एक डेंटल हॉस्पिटल है जिसका नाम दिवजॉनी डेंटल केयर है।